यह तस्वीर मै मुझे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे धार्मिक लोग दिखाई दे रहे है ओर यहाँ मुझे चर्च दिखाई दे रहा है |

यह तस्वीर मै मुझे एक साग दिखाई दे रही है |छारकुट की दिखाई दे रही है | कूट के साइड मै कुछ सेल्लिंग लगी हुई है |